एक मजदूर सीढ़ी से चढ़ रहा है।

इटा से बनी हुई वाल नजर आ रही है।

यहां पर बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का घर दिखाया गया है।

मुझे यहां पर एक लड़का नजर आ रहा है जो कुछ कर रहा है अपने पैरों और हाथों के साथ।

उन बैंबू पर ढेर सारे ये बलूंस भी लगे हुए है।

स्टेडियम पर एक न्यूजपेपर गिरी हुई है।

मुझे इस तस्वीर में बच्चों का पार्क नजर आ रहा है।

इस पार्क पर दो भी येलो कलर का स्लाइड है।

स्लाइड पे चार बच्चे खेल रहे हैं।

ये एस_बी_आई येलो कलर की है।

बहुत सारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर काम रहे काम कर रहे हैं।

एक पूरा सफेद और खुला आसमान नजर आ रहा है।

घर के लेफ्ट साइड में एक कार नजर आ रहा है वाइट कलर की।

वहां पर और दो चेयर है जिसका कलर सिल्वर है।

इस रिसेप्शन बोर्ड पर चश्मा का रिंग बनाया हुआ है।

मुझे बहुत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

ट्रेन के ऊपर ढेर सारे वायरस हैं।

एक लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू है और उनके सामने ढेर सारी पूजा की सामग्री है।

ढेर सारे कार और पेड़ पौधे भी है।

यह एक सजाया हुआ गेट है।

के गले पर लाल कलर की रस्सी है।

उसके पीछे पर जिम करने के ढेर सारे समान है।

जे ग्रीन कलर का बाइक भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर एक मेडिकल स्टोर की फोटो है।

एक मेडिकल स्टोर कर रैक है जहां पर ढेर सारी दवाइयां हैं।